दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। दुकान दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हम लोगो को एक गार्डन की पिक दिखाई दे रही है। यहां पर तीन लड़के--

अवर एक मूर्ति सरदार वल्लभभाई पटेल की बनी हुई है। हम लोगों को आसपास बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हम लोगो को पत्थर दिखाई दे रहे है। यहां पर हम लोगो को एक दुकान दिखाई दे रही है। यहां पर लालटेन लगी हुई है। एक घड़ी लगी हुई है यहां पर ऊपर--

सारी मशीनें दिखाई दे रही हैं। नीचे नेट बिछी हुई दिखाई दे रही है। देखने में बहोत अच्छी जिम दिखाई दे रही --

खेलने का ये सरकने का भी बना हुआ है। इसमें हम लोगो को एक पानी की टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है।

और एक बाइक दिखाई दे रही है। जो जा रही है।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

इस इमेज में हम लोगो को इंजीनियर दिखाई दे रहे है जो --

और हम लोगों को तीन दुकान दिखाई दे रहीं हैं। तीनो दुकान पर बहोत अच्छे करपरे टंगे हुए हैं। ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा।